जहां पे जो अअ कोका कोला की बोर्ड लगी हुई है।

एक शॉप है जिसके ऊपर मे वेलकम द स्मार्ट वर्क्शाप का बोर्ड लगा हुआ है।

और मोबिल कार केयर का ऊपर मे बोर्ड लगा है उसके बगल मे --

और आस-पास मे जो समान रखें हुए हैं बियर के बोटल हैं।

सिटी सेंटर सैलून है।

और नीचे वन मन्थ इन्टरेस्ट फ्री का बोर्ड लगा हुआ है।

और चर्च डेकोरैशन बलून से हुए है सजे हुए है।

ट्रेंड्स मॉल नजर आ रहा है।

यहाँ एक पेंडाल नजर आ रही है जिसमे राष्ट्र भारतीय पब्लिक स्कूल की बैनर लगी हुई है।